काफी लोग चल रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं साइकिल है।

एक बॉक्स है उसके ऊपर शीशा है अंदर कुछ सामान है ताले हैं दो लटके हुए हैं लाइटें जल रही है।

ये नदी है दो नदियां हैं बीच में एक मिट्टी का वो डेला सा रखे हुए हैं।

दो प्लेयर हैं एक बैट है वो बॉल कोकैच कर रहा है नीचे घास है।

काफी सारी सीढ़ियां है आजू बाजू में मकान है सामने काफी सारे मकान है पहाड़ है।

ये योगा क्लासेस हैं खिड़की है पर्दा लटका हुआ है।

आह्ह ये कोई घुमने की जगह है आस पास गमले हैं।

पेड़-पौधे हैं कुछ लोग सड़क पे हैं।

और ये एक रेस्टोरेंट है ऊपर काफी सारी लाइटें हैं काफी सारी मेज कुर्सी हैं।

ेन के ऊपर तीन लाइटें हैं एक बंदा अंदरह--

तोपेट्रोल केखड़े हुएडिब्बे हैं काफी सारी गाड़ियां हैं।

म उसके आस पास काफी सारे पेड़ पौधे हैं मकान है--

आदमी के पीछे पेड़ पौधे हैं नीचे पानी है पानी में काई आई हुई है।

काफी सारी बाइके हैं कार है एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ है।

अ पेड़ पौधे हैं आसपास पेड़ हैं।

बच्चों इसमें काफी सारे बच्चे हैं काफी सारी लाइटें हैं सामने खिड़की है उसपे पर्दा लटक रहा है।

पाइप पे लटके है नीचे पेड़ पोधै हैं ऊपर जाली हैं।